सास स सजा हुआ है अंदर बहुत अच्छा सजा हुआ है गेट की तरह दिख रहा है।

दो भैया हैं एकठो गाड़ी है जिसमे सामान डाल रहे हैं और अंदर में बहोत सारा सामान है और एकठो बिल्डिंग है उसमे शीट लगा है।

बहुत सारे है टीचर लोग भी है कुछ-कुछ बनवा रहे है यहाँ पर कलर है कैंची है पेंसिल है पन्नी है।

एक चार्ट पेपर है....और बच्चे बना रहे है यहाँ पे गोंद वोंद रखा है।